और बाड़ी में कुछ लगाया गया है छेका किया गया है जालियों से और बड़ा ही दूर से ऐसा नजारा दिख रहा है की बगीचा --

हर प्रकार की डंबल रखी गई है एक किलो दो किलो तीन किलो चार किलो जैसे और --

धोती भी पहने हुए हैं मांदर भी बजा रहै हैं।

यहाँ एक ऑल सोल्स चर्च इंग्लिश चर्च है जहाँ ईसाई धर्म के लोग रविवार को --

यहाँ एक बहुत बड़ा घर है और इस घर के बाहर में एक रोड गया है और रोड में यह सरकारी घर है जैसे लग रहा है और रोड में बहुत ही गाड़ी रखा गया है और दो-चार लोग बाहर में आकर कर कुछ काम कर रहे हैं और --

अच्छा घास लगाया गया है घास एकदम सुन्दर दिखाई दे रही है और तीन ठो स्टाम्प रखा गया है और चूने से पट्टी खींची गई है बड़ा ही सुन्दर दृश्य दिखाई दे रहा है और मस्त मनमोहक सोसे--